यहाँ पे रोड भी दिखाई दे रहा है और बहुत सारी बाइकें भी खड़ी हुई है यहाँ पे पोस्टर भी लगा हुआ हैै और लाइटिंग भी जल रही है बहुत सारी।

यहां पे बहुत सारे बोक्स रखे हुए है और किताबे भी रखी हुई है और यहाँ पे अलमारी भी दिखाई दे रही है जिसका कलर ब्लू और वाईट कलर हैं।

यहाँ पे एक व्यक्ति बेठा हुआ है जिसके साईड में बहुत सारे बलून लगे हुए है रेड कलर और उप साइड पीछे परदा भी लगा हुआ है गोल्डन कलर का और दीवाल भी दिखाइ दे रही है वाईट कलर की और--